सोफे के ऊपर कुशन रखे हुए हैं।

यह एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है।

यह एक बैग्स का शोरूम दिखाई दे रहा है।

सामने एक मैरिज हॉल दिखाई दे रहा है।

एक आदमी उसकी पिक्चर क्लिक कर रहा है।

जिसका बोर्ड का रंग है व्हाइट और आइस क्रीम पार्लर लिखा है रेड कलर के बोर्ड पे।

जिसके सामने बहोत सारे डिब्बे रखे हुए है गत्ते के--